यह एक कार्यालय मधुपुर नगर पार्षद का है जहाँ पे काली कलर की शटर दिख रही है ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है जहाँ कुछ लिखा हुआ है।

गाड़िया दिख रही है मुझे यहा पे --

मुझे रेलवे ट्रैक दिख रहा है यहाँ पे स्टेशन शो हो रहा है दो ट्रेनें शो हो रही है पीछे माल गाड़ी है पीछे पानी का टैंक है ।

झोले दिख रहै है ट्रक दिख रही है प्लास्टिक बकेट दिख रहै है टब दिख रहै है मुझे--

ब्रिज टाइप बना दिया है वहाँ जाने के लिए बहुत सी सारा पानी है।